एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है जिस पर लाल रंग की पट्टी बानी हुए है एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि नील रंग का है जिस पे सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है उसपे कुछ आकृति बनी हुई है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर एक मीनार दिखाई दे रही है येह मीनार पूरे रंग - बिरंगी लाइटों लगी हुई है लाइटें जल रही है सफ़ेद कलर की मीनार दिखाई दे रही है नीचे मेन द्वार दिखाई दे रहा है आसपास बहोत सारे मकान बनाए हुए है मकेन की --

और एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बराबर में किनारा दिखाई दे रहा है जो की मिट्टी फैली हुई है जिस पे छोटे-छोटे फूल खिले हुए है पीछे के तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे है गुंबद सा दिखाई दे रहा है जिस पर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे है।

एसी लगा हुआ है नीचे काउंटर पर लैपटॉप रखा हुआ है सामने तरफ कुर्सी रखी हुई हैं शीशे लगा हुआ है जिस पर एक पोस्टर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

काउंटर क ऊपर भी कुछ पैकेट रखे है जिस में सामान दिखाई दे रहा है।

पर एक फ्रिज रखा हुआ है. फ्रिज के ऊपर एक बोर्ड जो की नीले रंग का है जिस पे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है नीचे रैकेर बनी हुई है जिसमें चॉकलेट्स रखी है।

नीचे चॉकलेट के डिब्बे रखे जिसके अंदर चॉकलेट रखी हुई है नीचे और सारे डिब्बे रखे हुए है पीछे और भी सामान रखा हुआ है जिसमें चॉकलेट और टॉफिस के सम पैकेट्स रखे हुए है।

मकान बना हुआ है जो कि ईंटो का बना हुआ है नीचे बे मैदान में बेंचे पड़ी हुई है और दिन का समय है आसमान में सूरज छाया हुआ है और कुछ पक्षी भी दिखाई दे रहे है।

एक फर्श दिखाई दे रहा है जो कि ईटो का बना हुआ है खेत दिखाई दे रहा है ये खेत पर मैदान है मैदान में घास दिखाई दे रही है पीछे तरफ एक बिल्डिंग बानी हुई है जो की पिंक कलर की है।

पिलर दिखाई दे रहा हैं जिस पर तार बंधे हुए हैं हरे - भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस का गुंबद दिखाई दे रहा है चोटी दिखाई दे रही है और बड़े - बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो दूर तक फैले हुए हैं।

नीचे ईंटो की दिवार लगी है एक कार दिखाई दे रही हैं जो की सफेद रंग की है लोग खड़े हुए हैं कमरों के जा-खिड़किया दिखाई दे रही हैं।